आउर बाहर गेट पर कुछ फूल भी लगे हुए है।

और कुछ फोटो भी लगे हुए हैं और कुछ आदमी भी है।

और कुछ आदमी भी है।

और एक लवे का खंभा भी है जिस पे लाइन जा रखी है।

और कुछ लाईटे भी लगी हुई है और एक लकडी का टेबल है।

और इस पर जिन्ना भी है जिस पर लवे की ग्रिल लगी हुई है।

यह एक बहोत बड़ा मिट्टी का ढ़ेर है।

और एक बेड भी है और कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं और नीचे पत्थर बिछा हुआ है।

और कुछ कुर्सियां भी धरी हुई हैं।

आउट साइड में कुछ पेड़ भी है और एक बहोत ही बड़ा घर--

इसमें बहुत सारी खिड़कियां भी है और लवे की ग्रिल भी लगी हुई है।

और इसमें एक आदमी भी है।

इसके हाथ में फोन है और फोन की लाइटें भी जल रही है और रात का समय है।

यह एक बहुत सुंदर चर्च --